इस तस्वीर में हम एक फैक्ट्री देख रहे हैं। इस फैक्ट्री में बोहत - सा मोटर भी लगे हुए हैं।

इसमे बहुत सारे कपड़े मिलते है यहाँ पे एक बहुत से बड़ा कैटलोग लगाए है जोकि देखने मे बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है।

जिसमे लोग आते है अपने कार्य के लिए है जिसके सामने बोहत बड़ा गार्डन है यह गार्डन बोहत ही सुन्दर दिख रहा है।

इस तस्वीर में भारत के सैनिको को तिरंगे झंडे को लहराते हुए दिखाया गया है जो की बहुत ही अमूल्य तस्वीर है।

यहाँ पर मेडिकल साइंस की पढ़ाइ की जाती है यहाँ पर बहुत से बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी-अच्छी नौकरियाँ करते हैं।

इस तस्वीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ग में आ गए हो यह तस्वीर बहुत सी सुन्दर है।

यह ग्राउंड देखने में बहुत ही सुन्दर है और उसे भी ज्यादा सुन्दर दिखने में ये कॉलेज कैंपस है यह देख कर बहुत ही आनंद आ रहा है।